बड़ा गेट लगा है और एक कार खड़ी हुई है एक मोटसायकिल है जिस पर एक आदमी--

बैठा हुआ है ऊपर भी बहोत सारी पगड़ी दिख रही है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें नीचे बहोत सारी शटर दिखाई दे रही है और सामने--

साइन बना है और एक आदमी लड़का भी बना हुआ है वो पीछे सफेद कलर की दीवाल है और काले कलर का गुण --

घास दिख रहे हैं सामने को झूले बने हुए हैं जो रंगीन दिख रहे हैं।

पर्दे लगे हुए हैं और रंगीन फूलों के गुलदस्ते--

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें बाहर टेबिल है जिस पर बहुत सारी ब छोटी बड़ी --

पीले कलर की टोपी लगाए हुए हैं और ऊपर भी आदमी दिख रहे हैं पूरी बिल्डिंग कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और कुछ ही कहीं रंगीन दिख रही--

सामने एक सड़क दिख रही हैं जो नीचे लेकिन व्हाइट और कही पिंक कही ऑरेंज दिख रही है और दोनों एक साइड जाली लगी हुई है जो ग्रीन --

सामने एक टेबल दिख रही है और सोफे रही हुई है जो नीले कलर की हैं।

सफेद कपड़े पहने हुए हैं पीछे दीवाल पर रंगीन--